इस फोटो में मुझे चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है।

एक कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे जे_सी_बी दिखाई दे रही है।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

छेह कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।